एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है ग्राउंड है उसमें कुछ बना हुआ है टाइल्स लगे हुए है ऊपर खुला आसमान है।

एक साइकिल के पास में एक जने खड़े हुए है दो चार जने बैठे हुए है कई सारे लड़के बिजली के खम्बे के पास में खड़े हुए है।

इसमें चार पांच खम्बे है उसके उपर एक छत बनी हुवी है उसके उपर एक घुमट बनी हुवी है पास में एक पेड़ लगा हुवा है।

यह एक आयकर कार्यलय है इसके बाहर दो गाड़िया खड़ी हुई है एक कार खड़ी हुई है इसका रंग सफ़ेद और नीला है

इस बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है ऊपर लाइटिंग लगी हुई है एक बोर्ड लगा हुआ है।

उपर गुब्बारे और लाइट लगी हुई है कुछ स्टार लगे हुए है निचे फर्श पर टाइल्स लगे हुए है पीछे पर्दे लगे हुए है।